प्लेटफार्म का चबूतरे का छत नीले रंग की है कुछ खम्बा लगा हुआ है और कुछ कुर्सी लगी हुई है।

किनारो मे एक गमलो को रखा गया है सामने एक बडा काउंटर है जहा लोग बैठे हुए है।

होर्रडिंग बोर्ड के पास एक बडा सा ख्म्बा लगा है जिसके चारो और छोटे छोटे पेड पौधे लगे है सामने से एक सफेद रंग कि बस आती हुई दिखाई दे रही है कुछ बडे पेड कि झाडे है।

सामने मे एक कुर्सी लगा हुआ है जो लोहे का है गाड़ी है सामने एक व्यक्ति खड़ा है।

यहाँ पेट्रोल पंप के सामने नीले रंग की कार खड़ी है।

एक बडासा होटल जिसमे पहाडी फॅमिली रेस्टोरंट लिखा हुआ है होटल के सामने एक बडा सा बोर्ड लगा हुआ इसमे एक व्यक्ती का फोटो है।

एक छोटा सा फ्रेम है।

बीच के किनारे छोटा रेस-सा रेस्टोरेंट है जहा एक दीवार के किनारे लाल रंग की काले रंग की कुर्सियों को रखा गया है।

आस पास मे छोटे छोटे फूलों के गमले लगे है रेत का मैदान दिख रहा है।

एक बड़ा सा मैदान जिसमे कुछ गाड़िया पार्क की गई है।